यह एक कार रिपेरिंग का शॉप है जहां पर कार रिपेयर हो रही है एक व्हाइट कलर --

जो बैठे हुए हैं उनको जो खड़े हुए लोग हैं वो बहोत ही ध्यान से देख रहे हैं।

भगवान राम सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी की तस्वीर यहीं पर लगी हुई और गणपति बप्पा भी विराजे हुए हैं कुछ लेडिस खड़ी हुई है।

यह पे सूरज फूल एवं पान भंडार की है जिसमे की दो व्यक्ति--

इस पिक में हम देख प् रहे हैं दो माकन दिखाई दे रहे हैं बहुत सरे लोग लाइन लगाए खड़े हुए हैं और दो लोग बार कर रहे हैं एक सफ़ेद दुपटा ओढ़े एक लड़की जा रही है ।

यह एक सब्जी मंडी का दृश्य है जिसमे की लोग सब्जिया बेच रहे है और भीड़ भी लगी हुई है।

यह कारखाने की एक पिक है जिसमे की वह सारे मजदूर लगे हुए है जो की गिट्टी बनाने का काम चल रहा है वह येल्लो कलर के हेलमेट भी लगाए हुए है।

और कुछ बच्चे बहार खड़े हुए हैं जो बच्चे गेम खेल रहे हैं वे चार बच्चे दिखाई दे रहे हैं और हमें चारो तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और कुछ मकान भी दिखाई दे रहे --

यह हमें एक कारखाने की पिक दिखाई दे रही है जिसमें की लोहा गरम हो रहा--